यह एक फैक्ट्री या एक दुकान की तस्वीर लग रही है जहां पीछे कुछ सॉसेस पड़ी है सचेज़वान चटनी पड़ी है।

पीछे कुछ विंडोज नजर आ रही हैं वायर्स नजर आ रही हैं कुछ पाइप्स नजर आ रहे हैं।